बहोत सारे सितारे नज़र आ रहे हैं और रंग बिरंगी चुनरी लगी हुई हैं।

फादर का भाषण बहुत से लोग सुन रहे हैं और खिड़कियों में पर्दे लगे हुए--

यहां पर उसने बहुत सारे देवी देवता की पूजा की है और देख सकते हैं कवर्ड में भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग विषय की पुस्तक भी रखी नजर आ रही हैं।

यह वर्कशॉप है जहां एक जाली वाला गेट लगा हुआ है।

बाजू में एक पेड़ भी लगा हुआ है जो कि पपीता जैसे समझ में आ रहा है और एक देवाल पर लिखा है फर्स्ट एड बॉक्स नियर रिसेप्शन --

जहां एक बिल्डिंग पर हंगरी हार्ट कैफे लिखा हुआ--

नीचे की ओर एक किराने की दुकान है जिस पर बाहर की ओर बहुत सारे बॉक्ससे रखे हुए हैं।

एक पत्थर है उसके पीछे और घना जंगल सा भी नजर आ रहा है उसके पत्थर के ऊपर।

जहां पर दो लोग बैठे हुए हैं जोकि कुर्सी पर बैठे हुए--

यहां देख सकते हैं एक स्टेज पर दो सिंगर लोग कुछ गीत या सॉन्ग गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं।

सामने की ओर एक बिही का पेड़ नजर आ रहा है जिस पर एक लाइट भी लगा हुआ है।

यहाँ सामने की ओर एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमें पीली पट्टी में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

टेबल पर एक चाय का अह चाय का स्टाल सा भी नजर आ रहा है।

बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है और कुछ लोग मोटरसाइकिल पर बैठे हुए--

भी नजर आ रहा है और एक पेड़ सायतक सागौन का पेड़ है।

डेस्क पर दो कंप्यूटर रखे हुए है और एक चेयर भी रखी हुई है।

राम कॉम्प्लेक्स के बाहर दो या तीन बाइक खड़ी हुई हैं और कुछ कैमरे भी लगे हुए हैं।

यहां पर आप देख सकते हैं सामने की और एक रिक्शा खड़ा हुआ है उसके बाजू में बहोत सारे लोग आना जाना लगा हु--

क्रेन मशीन के बाजू में एक आदमी भी खड़ा हुआ है जो कि उसको बता रहा है।

सामने की ओर एक इस्कूटी खड़ी हुई है और बहुत सारी रोड में खुदाई चल रही।